बहुत बड़ी नदी है जिसका पूरा पानी आसमानी कलर का दिख रहा है नदी के पीछे बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं |

सीलिंग पर हथोडे से कुछ ठुकाई कर रहे हैं और इसमें बीच में लकड़ी के लम्बे लम्बे तीन चार खम्बे लगे हुए हैं |

अम बैंक का शटर उपर की तरफ खुला हुआ है ए.टी.एम. के सामने दो लोग खड़े हैं ए.टी.एम. के सामने सड़क है बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं स्कूटी खड़ी है मोटर साइकिल खड़ी है |

जोकि कार सज्जा में उपयोग किए जाते हैं | इसके सामने एक आदमी खड़ा है जोकि काले कलर की शर्ट पहना है अंदर कुछ लोग खड़े हैं और बाहर एक काले कलर की कुर्सी --